एक व्हाइट गाड़ी इस साइड खड़ी है दूसरी व्हाइट गाड़ी दूसरी साइड --

के अंदर कांटों वाले और बहुत सारे छोटे --

और ये मशीन बहुत आगे तक है और सके चार टायर है ।

उसके एक साइड एक लड़का खड़ा है --

कुछ लोग यहां पर बैठे हुए कुछ लोग खड़े है ।

और एक साइड पे ऊपर छत है और बहुत सारे लोग जहाँं पर खड़े हैं।

जहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है और इसके पूरे बिल्डिंग को शीशा लगा हुआ है।

और एक छोटी सी आगे ब्रांडे जैसी छत बनी हुई--

नीचे टाइल लगी हुई है एक साइड पे दो लेडिस खड़ी है।

जहाँ पे बहुत सारे लड़के-बच्चे बैठे हुए--

एक साइड में एक लड़का बैठा है एक साइड में दो लड़कियाँ और दो लड़के और बीच में एक काले कलर का टेबल है।

और आस-पास का पूरा मौहला इसमें दिखाई दे रहा है।

और नीचे रोड भी दिखाई दे रही है जहां बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ।

वो तीन लड़के खड़े है दो लड़कों के हाथ में--

जहाँ पे एक कच्चा रास्ता है जिसके एक साइड पे एक छोटी सी नदी है ।

और एक साइड पे सू सूखे पेड़ है और एक साइड पे हरे पेड़ है।

बहुत सारे लोग यहाँ खरीदने के लिए खड़े हैं।

छोटी-छोटी पौधों और बीच में हरा-हरा गार्डं भी है ।

और सामने भी एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें--

हल्दी बिस्कुट मसाले पानी की बोतले फेवीक्विक और एक साइड पर फ्रिज है।

जहाँ पर बहुत बड़ा एक खेत है जिसमें हरे कलर की एक फसल उगी हुई है।

और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है दो लड़के --

यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्तियाँं भी रखी हुई हैं।